एक यहां पर ट्रेन वाला पिंक कलर का झूला दिखाई दे रहा है।

और यहां पर काफी सारे कैमरे रखे हुए हैं जोकि अलग अलग डिजाइन के हैं अलग अलग कंपनी के भी है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यहां पर और भी घर वगैरा दिखाई दे रहे हैं ठीक है।